एक बिल्डिंग है जिसका कलर ऑरेंज एंड क्रीम है और ब्लू कलर के शीशे लगे हुए है।

जिसमे दीवारों पर व्हाइट और आसमानी कलर का पेंट किया गया हैगा लेब्रोटरी के ड-डोर पर कुछ तस्वीर चिपकी हुई --